ज्यादा पुराने नहीं है ठीक है। वाइट कलर की बिल्डिगस हैं ये वाइट कलर का पेंट हो रहा है और खिड़की भी है काफी सारी यहां पर।

ये काफी सारी रेत पड़ी हुई हैं। सामने पेड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं दूर शाम का समय है बादल हुए है आसमान में शाम का समय है ये सूरज ढल चुका है।

क्योंकि ये रास्ता आम नहीं है थोड़ा ख़राब होगा।

ये लाइट भी कुछ चमक रहा है और खिड़कियां भी यंहा पे काफी अच्छा है ये।

ये डांस क्लासेज चल रही है। ये मैडम सबको डांस सिखा रही हैं एक भैया वीडियो भी बना रहे हैं।